यहां पे एक इंडस्ट्री देखने को मिल रहा इंडस्ट्री के बगल में मुझे--

मुझे यहाँ पे बोहोत सारे लोग देखने को मिल रहे है सामने में मुझे यहा पर एक बड़ा सा घर देखने को मिल रहा है जिसका रंग--

पीला है घर के साइड में हमें दो बड़े बड़े स्पीकर देखने को मिल रहे हैं साइड में मुझे एक--

पानी का पाइप देखने को मिल रहा है हमें यहां पे छाता देखने को मिल रहा है सामने में हमें--

साइड में टोल लगा हुआ है टोल के ऊपर लाइट लगा हुआ है हमें देखने को मिल रहा है वहां पे ।

डब्बा देखने तो मिल रहा है। उधर हमें पोल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल --

साइड में मुझे वोटरमेलन देखने को मिलरा है मुझे वहा पर टावेल देखने को मिल रहा है पीछे में मुझे बोहोत सारे--

ऐ_सी देखने को मिल रहा है ऐ_सी के बगल में मुझे फैन देखने को मिल रहा है नीचे में मुझे बहुत सारे --

प्रतिमा देखने को मिल रहा है यहा पे साइड में मुझे बोहोत सारे आदमी देखने को मिलरे उपर में मेरे देखने को मिल रहा--

साइड में मुझे यहां पे नेट देखने को मिल रहा है वहां पे मुझे एक सीढ़ी देखने को मिल रहा है साइड में मुझे बहोत सारे पेड़ देखने को मिल रहे हैं ऊपर में मुझे आसमान--

मुझे यहाँ पर टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में मुझे यहाँ पर लाल रंग का कुर्सी देखने को मिल रहा है कुर्सी के बगल में मुझे--

जंक्शन देखने को मिल रहा है मुझे वहां पे शीशा लगा हुआ देखने से मिल रहा है।

मुझे एक घर देखने को मिल रहा है घर के साइड में मुझे सीडी देखने को मिल रहा है घर से ऊपर--

यहाँ पर टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में मुझे बोहोत सारे बेट देखने को मिल रहे है जिस तरफ पर बेठा जाता है।

टेबल के बगल में मुझे दीवाल पर एक बड़ा सा पोस्टर देखने को मिल रहा है उस के साइड में हमें यहां पर एक रूम देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर फूल लगा ऊपर में लाइट --

मुझे यहां पर पानी देखने तो मिल रहा है। पानी का रंग मुझे ताला देखने तो मिल रहा है। पानी में मुझे--

मुझे यह पर एक रोड देकने को मिल रहा है रोड के बगल में मुझे यहा बेटरी वाला टेम्पू देखन को मिल रहा है टेम्पू के बगल में--

हमें दो या एक आदमी और एक औरत देखने को मिल रहा है एक आदमी है जिसने--

हमें यहां पर टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स का रंग सफेद है टाइल्स के बगल में हमें यहां पे--

टेबल देखने से मिल रहा है जिसके ऊपर लाल रंग से पेंट किया गया हुआ है टेबल से साइड में मुझे बहुत सारे--

मुझे यहाँं पर टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में मुझे टेबल देखने को मिल रहा है टेबल का रंग पिला है टेबल के बगल में मुझे यहाँं पे --

मुझे यहाँ पर टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में मुझे यहाँ पर एक बेट देखने को मिल रा है बेट से बगल में मुझे यहाँ --

पास में पार्क देखने को मिल रहा है वहीं पे मुझे रोड देखने से मिल रहा है उसके बगल में एक--

बहुत बड़े-बड़े से पेड़ देखने को मिल रहे हैं साइड में यहां पर--

मुझे यहां पे दुकान देखने को मिल रहा है दुकान के नीचे मुझे यहां पे टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में मुझे यहां पे बहुत सारे कुर्सी देखने को मिल रहा है कुर--

गमला देखने को मिल रहा गमले का रंग हरा है गमले ऊपर पेड़ लगा हुआ है उसके आस पास मुझे बहोत सारे पेड़ देखने को मिल रहे नीचे में मुझे--

माटी देखने को मिल रहा है साइड में मुझे टाइल्स देखने को मिल रहा है उसके उपर हमे आसमान देखने को मिल रहा--

टेबल रखा हुआ है वहां पे सीडी बना हुआ है अंदर में बड़ा सा तिरपाल ही रखा हुआ है --

मुझे यहां पर एक अंदर एरोप्लेन के अंदर तक फोटो देखने को मिल रहा है उसके साइड में मुझे बहुत सारे--

छोटे छोटे पेड़ देखने को मिल रहे है सामने में मुझे एक झूला देखने को मिल रहा है अंदर में मुझे गेट के--

मुझे यहां पर नीचे देखने को मिल रहा है देखने के बदले मुझे टेबल देखने को मिल रहा है टेबल के ऊपर मुझे पंखा देखने को मिल रहा है।

आदमी बैठा हुआ देखने को मिल रहा है उसके बगल में हमें टेबल पे--

समुंदर के एक झरना देखने को मिल रहा है जिसके उपर पानी फुवारा दे रहा है उसके आसपास मुझे बहुत सारे लाइट देखने को मिल रहा है इस कमरे में हमे--

का बना हुआ देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है मुझे बस का रंग व्हाइट देखने को मिल रहा है।